यहाँ पर बहुत सरे लोग एक साथ बैठे हुए है। और खड़े हुए है। पीछे कुछ महिलये दिखाई दे रही है। अगल बगल कुछ लोग खड़े हुए है। सामने कुछ फाइल व रिपोर्टिंग रखी हुए है। सामने एक--

और कुछ लड़के है। जो बैठे हुए है। और खड़े हुए है। पीछे एक महिला झंडे को लहरा रही है। पीछे ल _इ_डी स्क्रीन चल रही है। और लाइट का प्रकाश इनके प--